अंदर देखने पर हरे रंग का एक कारपेट बिछा हुआ है रंग-बिरंग फूलों से यह सजा हुआ है सामने की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

जो दिखने पर खिड़कियां दिखाई दे रही है जिस पर जाली लगी हुई है अंदर से आती लाइट दिखाई दे रही है नीचे भी एक बोर्ड लग रहा है जो कि नारंगी रंग का है उसके बगल में लाइट लग रही है सड़क दिखाई दे रही है उसके भवन भी बना हुआ है।

द्वारा दिखाई दे रहा है द्वार पे पीले रंग का रंग हो रहा है आकृति बनी हुई है ये आकृति पूरे गेट पर बनी हुई है अंदर देखने पर दीवार दिखाई दे रही है जो की पीले रंग की है उसमें एक प्रतिमा रखी है।

इसके चारों तरफ आकृति बनी हुई है यह जो पर्स दिखाई दे रहा है उस पर भी आकृतियां बनी हुई --

पत्थर पड़े हुए हैं ये हरी-हरी घास बहुत दूर तक फैली हुई है पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और मकान बना हुआ है ये गाड़ी दिखाई दे रही।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

पेड़ दिखाई दे रहा है नीले कलर का है नीचे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है सड़क दिखाई दे रही है पीछे भी पेड़ और हरियाली दिखाई दे रही --

सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही हैं। ये एक लाल कलर के मेज पे डिब्बे रखे हुए हैं। नीचे फर्श दिखाई दे रहा हैं जोकी टाइल्स का बना हुआ हैं। लाईटे दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक खेत दिखाई दे रहा है खेत में हरी हरी घास दिखाई दे रही है यह खेत बहुत बड़ा है इसमें कुछ बच्चे खड़े हैं जो कि कुछ कर रहे हैं पीछे की तरफ देखने पर बाउंड्री दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो की बैंगनी रंग का है जिसमें लाल और सफ़ेद रंग से कुछ लगा हुआ है तीर बना हुआ है लाल रंग का है नीचे देखने पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान क शटर दिखाई दे रहा है।

छोटे-छोटे पोधे गमले में लगे हुए हैं एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है लाइटे दिखाई दे रहा है लाइटे जल रही है नीचे का फ़र्श दिखाई --

नदी दिखाई दे रही है। नदी मे पानी दिखाई दे रहा है। यह पानी बहुत दूर तक फैला है। यह नदी बहुत बड़ी है। पीछे की तरफ देखने पे यहां पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ो पे भी हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

परदा लगा हुआ है जो कि सफ़ेद रंग का है जिसपे मालाए टंगी हुई है इनके आगे कुछ प्लेट और रखी है जिसमे कुछ सामान रखा है फूल लगे हुए है और दीपक दिखाई दे रहा।

नीचे के फ़र्श दिखाई दे रहा है जो की टाइल्स का बना हुआ है इसमें के आदमी खड़ा है जो जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पेहन रख --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो ईटो की बनी हुई है। एक छत दिखाई दे रही है जिसपर निर्माण का कार्य चल रहा है। रेलिंग सामान रखा हुआ है। बोरिया रखी हैं। मजदुर लोग हैं जो की काम कर रहे हैं।

सामने की तरफ एक बहोत बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है। जिसके नीचे काले कलर की पट्टी लगी हुई है बीच मे थड़िया दिखाई दे रही हैं। यहां स कुर्सियों की मात्रा बहोत ज्यादा दिखाई दे रही है।

नीचे देखने में पर यहाँ पर खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं खिड़कियों के अंदर दीवार पर गुलाबी रंग हो रहा अच्छा नीचे फर्श पर देखने पर में बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हैं एक कार खडी है जोकि सफेद रंग की हैं पेड़ खड़े हुए हैं।

दूसरी तरफ देखने पर एक कार औरते दिखाई दे रही हैं जिसके आगे बड़े-बड़े पेड़ लगे --

बाहर की तरफ एक थैला लेहा लटका हुआ है जोकी लाल रंग का है। जिसपे कुछ लिखा हुआ है। एक बोर्ड लग रहा है। जिसपे लाल और हरे रंग से लिखा हुआ है। और बी सामने के तरफ देखने पे एक कुर्सी रखी जोकी सफेद रंग की हैं । उसके बराबर एक में मकान बना है जिसकी दीवार सफेद रंग--